यह एक होटल है द बर्गर ऊपर मे लिखा गया हुआ है।

और एक आदमी भी अपना शटर उठा रहा है।

लोहों का एंगल भी लगा गया है।

यह होटल है जो चारों पट्टी बैलून से सजाया गया हुए हैं।

और उसका आगे में एक चेयर भी है।

और बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे बहुत सारे बच्चे भी हैं।

और चेयर भी हैं और टेबल का कलर पिल्ला और लाल है।

ए और एक घर भी दिख रहे हैं।

चारों पट्टी शीशा भी लगाए गए है।